एक बहुत बड़ा मे पार्क है। उसमे निम् सड़क भी है। एक जेन्स बैठा है दो खड़े हैं। बहुत बच्चे खेल रहे हैं।

और बोहोत बड़ी-बड़ी मूर्ति रखी है। बोहोत सुन्दर मंदिर है। झूला लग रहा।